यहाँ पर एक दूकान दिख रहा है जहाँ पे बड़ा सा टेबल जैसा बना है काच लगा है सामने में इसके अंदर कुछ-कुछ सामान है।

यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर जैसा दिख रहा है जो पूरा काला-काला दिख रहा है कुछ पिंक पिंक दिख रहा है।

और बहुत सारी हरी-हरी घासे लगी हुई है बहुत ही सारे हिरण है और बड़ा-बड़ा सा पेड़ भी दिख रहा है हरा-हरा पत्ता लगा हुआ है।

और दरवाजा है खिड़की है खंभा-खंभा जैसा बना है सीढ़ी बना हुआ है।

यहां पर कुछ खंभे जैसे दिखाई दे रहे है सूर्य दिख रहे है सूर्य भगवान कुछ पीला हल्का पिंक विंक दिख रहा पूरा काला दिख रहा है।